और ये शॉपिंग जोन की फोटो है।

स्कूल के बाहर का ग्राउंड दिख रहा है जहां एक आदमी वहां से लौट रहा है एक दादी वहां अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का के--

मुझे किसी दुकान के अंदर की फोटो दिख रही है।

जहां भीड़ लगी हुई है बहोत शांत माहौल है मजा आ रहा है।

यह एक लाइब्रेरी है भोपाल की।